और बीच में एक पाइप फैला हुआ है।

यह किसी नदी और समुद्र किनारे नाव खड़ी हुई हैं और कुछ नाव उल्टी पड़ी हैं | यहाँ पर थोड़े पत्थर और कुछ नाव पानी में तैर रही हैं जिस पर कुछ आदमी भी हैं।

यहाँ पर एक कपड़ों की दुकान है जिसमे बहुत तरह के कपड़े रखे हुए है इनमे से कुछ साड़िया है और कुछ सूट टंगे हुए है।

यहाँ पर तीन तरह के कपडे रखे हुए हैं उनमे से एक हरे रंग का है एक नीले रंग का और एक गुलाबी रंग का है उसके ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमे से जूते दिखाई दे रहे हैं।